खिड़की बा। पर्दा बा। लइका खड़ा बान स। खिड़की बा। फुलौना बा। आदमी एगो चार गो खड़ा बान स। एगो आदमी कुर्सी पर बइठल बा।